इस तस्वीर मे मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ बोरियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे फूलों की माला दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पलंग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।